और यहां पे वो बहोत सारे लोग भी है।

रेड कलर का कारपेट है और यहां छोटे लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां हरे भरे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं और यहां छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है यहां।

यहाँ पे लड़के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे लड़कों के हाथ में फोन दिखाई दे रहा है और वो यहाँ पे फोटो ले रहे है।

यहां पे एक सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है छोटा सा और यहां पे--

मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं।